सड़क के उस पाड़ हरियाली ग्राउंड और बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं कुछ व्यक्तिगण भी हमें सरकों पर खड़े अगल बगल दिखाई दे रहे हैं।

यह हमें एक शॉप नजर आ रही है जहां पे--

कुछ हिरन हमे सामने घास चरते हुए नजर आ णहे हैं।

यहां पर हमें कपड़े की एक दुकान नजर आ रही है जहां पर--

चारों तरफ दुकान में कपड़े रखे गए हैं सजा करके--